सामने की तरफ मुझे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है आसमान मे कई जगह पर बादल दिखाई दे रहे है कई जगह पे बादल नहीं दिखाई दे रहे सामने की ओर मुझे एक वायर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहै है यहा हॉल मे काफी सारे बच्चे दिखाई दे रहै है और यह हॉल को हम चर्च भी कह सकते है यहा पर उपर सीलिंग के उपर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर मुझे कुछ लेडिज भी दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है बच्चा एक बच्चे को गोदी मे लेके खड़ा हुआ है और ये एक गाँव की फोटो दिखाई दे रही है यहाँ पर ये मुझे एक उजाला भी आते हुए दिखाई दे रहा है पीछे की और मुझे घाँस पूस भी दिखाई दे रही है यहाँ पर जो जमीन का कलर है मुझे अ ग्रे दिखाई दे रहा है और ये देखने पर बहुत ही अच्छा दिखाई दे--

और यहाँ पर मुझे बहुतसारी पब्लिक भी दिखाई दे रही है कुछ भी लगाई दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे कुछ लाइट चमकते हुए भी दिखाई दे रहे है और यहाँ सिनेमा हॉल में हिडन कैमराज और हिडन इस्पीकर भी होते है और यह देखने पर अच्छे लगते --

तस्वीर मे मुझे एक मच्छी मार्केट दिखाई दे रहा है जिसमे मुझे एक यहाँ पे त्रिपाल भिछी हुई दिखीं जी रे दे- दे- रही जोकि हरे कलर की उसके ऊपर यहाँ पे छोटी बड़ी मच्छी दिखाई दे रही है।

यहा पर कुछ लेडिज भी बैठी हुई दिखाई दे रही है जो की सारी लेडिज है वो साड़ी औरतें बैठी हुई है और साड़ी के साथ-साथ वो घूँघट डालके बैठी हुई है पीछे की ओर मुझे बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहे है और ये मुझे धुँधलापन दिखाई दे रहा है और तस्वीर को हम फ़िल्टर के द्वारा लिया --

यह तस्वीर मे मुझे बहुत सारी लेडिज एक जगह पर बैठी हुई दिखाई दे रही है और ये लेडिज मुझे अह सारी साड़ी मे दिख रही है जो की बहुत ही कर्च्युलर दिखाई दे रही है।